वैसा और भी एक पौधा भी है आस-पड़ोस खाली जमीन है।

में एक गेट है गेट से जाने का है एक आसपास बहुत सुंदर-सुंदर फूल लगे हुए है।

इसमें तीन तल्ला बिल्डिंग शो हो रहा है उसमे बालकोनी भी है बालकोनी दिख रहा हैऔर एक बड़ा सा उसके बगल मे बहुत बड़ा पेड़ भी नजर आ रहा है अ बादल शो हो रहा है।

देखने में मजा आ रहा है बहुत सारा आदमी है जिसके पास कुछ टाइप का है और दीवाल में ड्राइंग चिपका हुआ है।